मुझे इस फोटो में लोग दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो पर एक टब रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर पांच लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो पर सफेद कलर का--

मुझे इस फोटो पर कुछ लोग पूजा करते हुए--

मुझे इस फोटो पर हरे कलर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।